और आदमी लोग भी बहुत है लगता है पूजा हो रहा है शादी--

जो यहाँ लगता है बहुत सारे आदमी आए हैं जी लगता है कि निकाली वह वगैरह हो रहा है बहोत ही अच्छा लग रहा है।

यह राम भगवान की एक तस्वीर है जहाँ पे लोग पूजा कर रहे है दिया जला रहे है मोमबत्ती जला रहे हैं ।

लाइट लगा हुआ है ही घर बहुत ही अच्छा दिख रहा है पेंट बहुत ही अच्छा लगा है।

और पैसेंजर भी बहुत हैं लगता हैं भीड़ भड़ाका वाला है।

ई एम _एस नाइन _टी _थ्री बोलते हैं।

नदी है नदी का किनारे जो की किनारे में--

फाड़ के रख देते है किसी को भी--

बहोत ही अच्छा दिखता है ये और--

ट्रक गैराज हैं यहाँ पे गाडी सर्विसिंग के लिए आते है।

जहाँ पे हमको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रही है।